एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है जिसमें ढेर सारे पत्ते लगे हुए हैं।

एक पुल लगाया हुआ है जो ब्लैक कलर का दिखता है।

तीन डमी रखे हुए हैं यहां पर--

डॉक्टर ने हेयर हरे का कपड़ा लगा रखा है डॉक्टर डॉग को सुई लगा रहे--

यहां पर एक गेट भी है जहां पर--

ढेर सारे पेड़ पौधे हैं यहां पर एक--

आदमी टेबल पे बैठा हुआ है आदमी के पास--

जिसमें ढेर सारी लड़कियां डांस --